बाजार हम लोग रोज किसी न किसी काम से बाजार जाते हैं। वहां पे भीड़-भाड़ बाइक्स रिक्शे ठेलीयां फल सब्जियों की देखते हैं वहां पर --